और एक आद जो यहाँ पर कारीगर है वह अपना काम कर रहा है यहाँ पर चेयर है यहाँ पर बहुत सारी क्रीम मशीन रखे हुए है।

और यहाँ पर दो उस के जो दुकान में रहते हैं स्टाफ है।

मोबाइल को शोकेश में रखा गया है ताकि लोगों को इजी बने --

उसको शायद फिर से रीमॉडलिंग किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो दो लोग खड़े हुए हैं वो ऑरेंज कलर का जैकेट सेफ्टी जैकेट पहने हुए है।

और एक आदमी ब्लैक कलर का पेंट पहना है एक आदमी ब्राउन कलर का पेंट पहना हुआ।

देखिए एक डोरमेट का दुकान है यहाँ पर बहुत रंग बिरंगी डोरमेट लाइम के --

और इसके दो बड़े-बड़े खिड़कियां हैं झरोके --

अ पाइप वीईप रहता है इसमें पानी वाणी भरा हुआ रहता है ताकि वो जा के करे।

ये हम सामने में देख रहे श्री साई का बस है दो बस खड़े हुए हैं रेड कलर के बस है।